यहां पर देखिएगा सामने केले और उम् भिंडी टमाटर प्याज आलू मेथी दिखाई दे रही है।

और पेड़ की छाया भी दिखाई दे रही है।

यहां पर एक हॉल नजर आ रहा है जहां पर कई सारी लड़कियां ऊपर हाथ जोड़े खड़ी हुईं हैं योगा कर रही हैं।

और लाइटें भी जलती दिखाई दे रही है।

और सामने पेड़ के पत्ते भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर बड़ासा मैदान दिखाई दे रहा हैं।

यहां पर देखिएगा साइड में सामने एक इमारत भी नजर आ रही है।